एक टेबल रखी हुई है जिसपे फ्लावर्स रखे हुए है अ-चार उसमें पाय लगे हुए है और व-वो व्हाइट कलर के है छत पे ग्रीन और व्हाइट कलर है और फर्श पे ग्रीन और रेड कलर है।

एक ज़मीन ज़मीन पे पेड़ की छाया दिख रही है।

ये चित्र रेल का है रेल का रंग नीला है छत सफ़ेद है ऊपर आसमान है आसमान में सफ़ेद और आसमानी रंग है और उसके पास एक खम्भा भी है। लाइट का --

में फर्श पर बैठकर लोग योगा कर रहे है और सामने एक अअअ मकान बना हुआ है जिसके ऊपर लाल कलर की छत है।

इस चित्र में किताबों की अलमारी दिख रही है जिसमे बहुत सारी अल-किताबे रखी हुई हैं।

ये चित्र किसी समरोह का है जो किसी जिसमें सब लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं प्ले-प्लेटो में लेकर खाना था-थालियों में लेके सब अपने अपने थालियों में लेके खाना खा रहे हैं।